मुझे इस फोटो में इसकूल नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में पेड़ नजर आ रहा है।

मुझे इस फोटो में कांटे नजर आ रहे हैं।

मुझे इस फोटो में कार दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो में जाली दिखाई दे रही है।

सिटी का दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में पोस्टर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर हरा कलर का मैदान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो मे लोग नज़र आ--

मुझे इस फोटो पर खाना खाते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर गिलास दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर फर्श दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर मंदिर दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो पर शंकर जी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर सीढी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर केला के पत्ता दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पर मुझे लंबा सा एक साइड पोस्टर दिखाई दे रहा है।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

मुझे इस फोटो पर कच्ची रोड दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर--

मुझे इस फोटो पर मंदिर दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो पर ग्रीन कलर के--

से दिखाई दे रहे हैं मुझे इस फोटो पर सीढी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर लोग नजर--

कुछ टमाटर की फसल दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो पर कूलर दिखाई दे रहा है।